और उस दुकान पे जो बोर्ड लगा है उसमें हरिओम मेन्स वियर लिखा हुआ है।

यहाँ पे दो जो फेसिअल किट है वो शहनाज़ हुसैन के हैं।

और इस बहु मज़िला इमारतों में --